ये जगह चर्च है पीछे क्रॉस लगी हुई है पंखे चल रहे हैं लाइट जल रही है बहुत सारी महिलाएं और बच्चे बैठे हुए हैं अलग-अलग कलर की साड़ी पहने हुए हैं।

दीवाल पे बहुत सारे सजावटें है खिड़की है खिड़की के ऊपर में पर्दे लगे हुए है बहुत सारे स्टार्स लगे है दिन का समय है नीचे बहोत दरी बिछी हुए है जिसका कलर रेड है।

यह तस्वीर एक बस स्टेशन का है सामने एक बस खड़ा हुआ है बस का दरवाजा खुला है बस के बाजू मे कुछ लोग चल रहे है बगल में एक रिक्सा है।

यह जगह एक पहाड़ है जिसे एक आदमी एक महिला खड़े हुए है महिला के सिर पे चश्मा हैं।

यह तस्वीर एक चर्च का है चर्च मे बहुत सारे व्यक्ति खड़े हुए है सामने दो महिलाए है जो नीचे सिर झुका के प्रे कर रहे हैं।

व्यक्ति बहुत सारे खड़े हुए हैं रास्ते पे चल रहे हैं पीछे एक अ बिल्डिंग है जिसपे घड़ी है।

इस ए_टी_एम के बाहर खड़े हुए है दिन का समय है बैंक के ऊपर में ए_सी का आउट डोर लगा हुआ है खंभा हैं।